कॉर्नर के बाहर में जो है कुछ एक मटका रखा हुआ है पानी पीने के लिए।

ट्रक भी लगा हुआ है जिसमें पेट्रोल लाया जाता है भर भर के।

मंच गेट के पास एक बड़ा सा ड्रम रखा है नीला कलर का।

आदमी टी शर्ट और नेकी पहना हुआ है।

यहां पे लोग का आवागमन थोड़ा कम लग रहा है।

इसमें एक टापू के स चारों तरफ पानी है बीच में टापू है।

सारे छोटे छोटे लाइट्स लगे हुए हैं जोकि जिम की खूबसूरती को बढ़ा रहा है।

पिछे वृक्ष भी दिख रहा है इसमें।

कलर के कवर से ढका पड़ा है।

इस पिक्चर मे पेड़ की परछाया भी दिख रही है।

ढाबे के बाहर एक आदमी खड़ा है।

पे गद्दा रखा पड़ा है ताकि कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं उस पे।

फोटो एक का घड़ी के दुकान का है।

आसमान में बादल छाए है स्कूल के पीछे एक टॉवर भी दिख रहा है।

यह एक मेला का नजारा है।

यहां पे कच्चे रोड दिख रहे हैं पक्के रोड नहीं है कच्चे रोड है।

यहां पहाड़ों के बीच से एक नदी गुजर रही है।

सब्जी का भंडार दिख रहा है जहां पे अलग अलग टाइप की सब्जी है।

सब्जीस में से मिर्ची दिख रहा है।